छविक में एक छत है छत का रंग सफेद है।

छत पर लाइट लगे गए है।

एक प्रिंटर भी है।

छवि में एक कोचिंग है।

कार के पीछे की दीवार का रंग सफेद है।

अभी में लोग पारंपरिक परिधान पहने हुए हैं।

यह छवी एक खुले क्षेत्र का है छवि में एक बहुत बड़ा इमारत है इमारत की दीवार का रंग सफेद और ग्रे है।

छवि में ईंटे भी रखे गए हैं जो इंसान के पीछे है।

इस छवि में एक दवा खाना है।

छवि में बड़ा इमारत है।

पोस्टर पर सिस्कोन पान सौ लिखा हुआ है।

छवि में एक बंद शटर है शटर का रंग नीला है।

शटर कुर पर डालमिया सीमेंट लिखा हुआ है।

छवि में सूर्य भी है।

छवि में इमारत भी है।

यह छवि खुला क्षेत्र का है।

पंखा सफेद रंग का है।

यह छवि एक मॉडल का है।

और उनके तस्वीर का इस्तमाल किया गया है।

छवि में कई लोग हैं छवि में वाहन भी है।

छवि में एक दुकान है।

हरे रंग के कारपेट पे लेटा हुआ है।

यह छवि एक दुकान का है।

ये छवि भी एक शादी समारोह के रात के दृश्य का है।

एक बड़ा तंबू लगाया हुआ है।

दुकान के अंदर एक ट्यूबलाइट लगाया हुआ है।

उस पोस्टर के नीचे एक बजाज का पोस्टर है।